बादल दिख रहे है बड़े बड़े हरे पत्ते दिखाई दे रहे है गुलाबी फूल दिखाई दे रहे है।

ट्रेन की पटरी दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है।

गेट दिखाई दे रहा है रोड जाता हुआ दिखाई दे रहा है हरी घास दिखाई दे रही है।

रोड दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक बस दिखाई दे रही है बहुत सारी सीटें दिखाई दे रही है।

फूल दिखाई दे रहे हैं हरी घास दिखाई दे रही है फूल पीले कलर के हैं।

इस तस्वीर में हमें प्लेट दिखाई दे रही है प्लेट में बहुत सारे चावल रखे हुए है।

बस दिखाई दे रही है कैब दिखाई दे रही है।

हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं आसमान दिखाई दे रहा है बादल दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें बहुत बड़ा मेडिकल कॉलज दिखाई दे रहा है बोर्ड लगा हुआ है।

झूले दिखाई दे रहे है दुकाने दिखाई दे रही है गाड़िया दिखाई दे रही हैं।

बहुत सारे इंसान दिखाई दे रहे हैं लाइट्स दिखाई दे रही हैं।

युपीएससी बोर्ड लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें एक मंदिर दिखाई दे रहे है बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

जाली दिखाई दे रही है पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

बादल दिखाई दे रहे हैं कांच के दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंगे दिखाई दे रही है बाइक दिखाई दे रही है स्कूटर दिखाई दे रही है कार दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में हमें एक एटीएम दिखाई दे रहा है।

बोर्ड पर स्टेट बैंक एटीएम लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें एक तालाब दिखाई दे रहा है।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं आसमान दिखाई दे रहा है।

जलीया दिखाई दे रही है लाल पिलर दिखाई दे रहे है।

बड़े-बड़े झूले दिखाई दे रहे हैं।

सफेद झालरे दिखाई दे रही है एक औरत दिखाई दे --

हरी घाँस दिखाई दे रही है मिटटी दिखाई दे रही है रोड दिखाई दे रहा है घर दिखाई दे रहा है।

आसमान दिखाई दे रहा है लाइट का खंम्बा दिखाई दे रहा है बादल दिखाई दे रहा है।